कुछ खंबे भी दिख रहे हैं पेड़ पौधे भी है।

यह एक बहुत सारे पास्टर है जिनके मुंह गले में माला भी दिख रही है।

और नीले बैक कलर का चटाई दिखाई दे रही है।

ऊपर नीले कलर का आसमान भी है।

सामने एक गेट दिखाई दे रहा है।

नीचे नहर दिख रही है जिसमें बहुत ही पानी है।

और सामने जमीन दिख रही है जिस पर हरा घास दिख रहा है।

बल्ले अलग अलग हैं कुछ एस_एस के हैं कुछ टोन के हैं।

नीचे फरश हुआ है सामने जंगला है।

कुछ व्हाइट की है कुछ ब्लैक की है।

नीचे कुछ चटाई भी है।